फिरोजी कलर का और पीले कलर का पेन्ट यहाँ लोहे के जीने बने हुए है यहाँ एक साइकल र-- ।

यहाँ दीवालों का कलर सफेद है यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ सामने पोस्टर टंगा हुआ हैं ।

सामने रोड दिखायी दे रहा है यहाँ सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिखायी दे रही है यहाँ लोहे के पाइप दिखाई दे रहा है उसमें ऊपर लाइट लगी हुई है यहाँ पर मिट्टी दिखायी दे रही है यहाँ सामने--

सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है जिसके हाथ मे तलवार है ये मूर्ति काले कलर की है इसके गले मे माला डली है यह एक छत्रपति शिवाजी की मूर्ति दिख रही--

पीले कलर की एक बिल्डिंग का चद्दर का सेट बना हुआ है जहाँ लोहे की एक जाली बनी हुई है जो लाल क--

यहाँ सामने रोड पर एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है एक पाइप दिखाई दे रहा है जिसमे लाईट लगी हुई है यहाँ डोरियाँ दिखाई

हुआ है और एक यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ड्रेस पहनी है और यहाँ पर सामने दो बाइक रखी हैं|

हमम ने अ एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहाँ एक बच्चा दिखाई दे रहा है यहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई--

लाइटे दिखाई दे रही यहाँ पर गी गुलाबी कलर का रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्रे टाइल्स लगी हुई है ट्रेन का कलर पीला है।

दे रहा है जिसका कलर हरा और कत्थई कलर से पेंट है यहाँ सामने एक टैंकर दिखाई दे रहा है और जो टैंकर का कलर सफेद ऑरेंज और नीले कलर का हैं ।

सफेद कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर--

दे रहे है यहाँ पर एक पाइप है उसमें झण्डा लगा हुआ है यहाँ सामने लोहे की जलियां दिखाई-- ।

दे रहा है जिसकी हरी पत्तियाँ दिखाई दे रहीं हैं और ये दिवालों का कलर ऑरेंज है।

कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक बाइक रखी हुई है एक स्कूटी रखी हुई है यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर उसके ऊपर एक बेग टंगा हुआ है देवालों का कलर सफेद है यहां --

यहाँ पर छोटे-छोटे हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है पीछे एक सफ़ेद कलर की बस दिखाई दे रही--

दिखाई दे रही है यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे यहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा हे यहाँ पर रोड पर एक जीप चल रही हैं।

-- और यहाँ पर चद्दरों के सेट का कलर सफ़ेद है यहाँ काले कलर का चबूतरा बना है यहाँ पर कुछ लोग टहल रहे हैं बैग टांग के--

काले कलर की और यहाँ पर लोहे के पाइप दिखाई दे रहा जिसमें लाइट लगी है यहाँ डोरियाँ दिखाई दे रही--।